यहाँ पर एक घोड़ा गाड़ी है कुछ रिक्शे हैं।

इधर एक पानी की टंकी बनी हुई है सीमेंट की।

और एक पेड़ है यहाँ छोटे-छोटे पेड़ भी दिखाई दे रहे है यहाँ पहाड़ी बहुत सुन्दर दिखाई दे रही है।